यह बहुत लम्बी सड़क दिखाई दे रही है जिसमे कुछ बसे खड़ी हुई नजर आ रही है यहाँ पर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग भी नजर आ रही हे जो वाईट कलर से पेंट की गयी है यहा पे एक बहुत बड़ा टावर भी दिखाई दे रहा है।

बोहत बड़ा जंगल दिखाई दे रहा है इस जंगल में काफी सारे पेड़ पोधे भी दिखाई दे रहे है यहाँ पर एक बहुत बड़ा शेर नजर आ रहा है इस शेर को अ-शेर उसके पत्थर के नीचे बैठा हुआ है यहाँ पर छोटे--

एक जंगल दिखाई दे रहा है इस जंगल में काफी सारी हरियाली भी दिखाई दे रही है यहाँ पे काफी सारे पेड़ पोधे भी दिखाई दे रहे है यहाँ पे एक--

आसपास लोहे की जाली लगी हुई है जिसके अंदर एक बहुत बड़ा चिट्टा दिखाय दे रहा है जो की एक पेड़ पास बेठा हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे कुछ मिटटी भी दिखाई दे रही है।

यहा पर एक छपरी टाइप की बनी हुयी है उसके अंदर कुछ पेड़-पोधे दिखाय दे रहे है यहा पर इस जंगल टाईप में यहा पर छोटी छोटी दुवा भी उग रही है यहा पे एक बॉन्डिंग भी की हुई हैं। उसके अंदर कुछ मिटरी भी दिख रही --

एक ठिलिया रखी हुई है इसमें तीन चार बड़ी बड़ी माइक भी लगे हुए है यहाँ पर डी.जे. भी लगा हुआ है यहाँ पर आसपास कुछ लोग भी दिखाई दे रहे है।

यहाँ पर एक-हरे कलर की दीवाल पर पेंट किया हुआ दिख रहा है यहाँ पर कुछ जानवर दिखाई दे रहे है जो की घास खाते हुए नजर आ रहे है यहां पर काफी सारा घास भी डला हुआ नजर आ रहा है।

की दिखाई दे रही है यहाँ पर एक हाथ दिखाई दे रहा है जो की उनको कुछ ख्ह्ह-खिलाने के लिए दिया जा--